जो स्टेशन के ठीक बगल में ही है गोरखपुर में

कोको कोला का प्रचार होता मीरा बेकरी के दूकानी पे ।

एक आदमी नीचे की तरफ एक आदमी थोड़ा हाइट पे खड़ा हुआ जो पिंक कलर का टी-शर्ट पहने --

क्यूंकि शाम का समय है तो खुद शाम के समय में सूर्य के अपोजिट जोकि फोटो लिया जाता है तो बहोत अच्छा आता फोटो ।

न्यू मारुती सर्विस सेंटर के नाम से है और ये पथरिया नामक जगह में है जो गोरखपुर में है।

वहां वहां वहां ये दुकान है। काफी फेमस दुकान है ये।

दूसरी चीज पे ये लोग डिस्कशन कर रहे है हैं बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ होगा।

दरवाजा व्यवस्था बहुत साफ़ सुथरा और मतलब एकदम --

इस तस्वीर में मुझे ये लग रहा है कि अभी ये नया नया मतलब कि ये जो एरिया अभी नया नया डेवलप हो रहा है।

अभी आस-पास प्लॉटिंग हुई है छोटी-छोटी जमीनें दो बोलते का प्लॉटिंग हुआ है।

बोहोत अच्छे से एकदम सिस्टेमेटिक जो कहते हैं न फुल मतलब किसी आर्केटिक का ये मतलब बोहोत अच्छे से बनाया इन्होने।